ये एक पार्क है जिसका नाम महिंद्र नारायण पार्क है जो की काफी अच्छा है बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है।

बहुत ही बढ़िया कॉलेज है जो की यहाँ बहुत सारे यहाँ पे अस्टूडेंट लोग पढ़ते है और--

यह एक सिटी है बहुत ही बड़ा सिटी है जो कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पे एक पेड़ है और बहुत सारे बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं।

और ये कोई पोखरा है पोखरा या नाली कह सकते हैं इसको छोटा सा है और बहुत ही बड़े-बड़े बिल्डिंग है जो कि बहुत ही अच्छे हैं।

और ए उम् पेड़-पौधे है बहोत सारे खेत खलिहान है इधर और उम् बहो हरयाली ही हरयाली है बहोत अच्छी नजा--